--बिच में बहुत सारे हरे रंग के पत्ते वाले फक्र किए हुए हैं कुछ औरएज से भी फल है कुछ लाल रंग भी है बहुत सारे लोगा है जो दूर में समने में बैठे हुए हैं समने ‌मे एक आदमी हंस रहा है जिस ने सफेद शट पहन हैं।

एक ठाकुर बनी हुई है जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी है गले पे येलो कलर और रेड कलर की फूल की माला है।

रोड दिख रहा है जिसमे एक पतला-सा गार तना है व्हाइट कलर का साइड में कुछ पिंक कलर भी दिख रहे है साइड में बहुत मट्टी जमी हुई है।

एक बहुत बड़ा-सा एरिया है जिसमे बहोत सारे गछ है जो ग्रीन पत्ते वाले लंबे-लंबे है कुछ रेड पत्ते वाले हैं ।

बोहोत सारा एक में एक अअ लड़की बैठी हुई है जिसका बाल खुला हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा लगा है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने कैंची लगाई है उसकेे बाल में दूसरे साइड में एक आदमी --

बड़ा-सा एरिया है जिसके नीचे की मट्टी काली है कुछ ग्रीन कलर के अ गज उठे है| कुछ घांस है कुछ छोटी-छोटी गोल-गोल पत्थर वाली गज है यह बड़ा-सा गमला है जिसमे काले रंग का पानी दिख रहा है ।

एक बहुत बड़ा सा एरिया है जिसके एक साइड में थोड़ा सा पानी दिख रहा है दूसरे साइड में चट्टान है जो व्हाइट है और कुछ घास उगे हुए है ग्रीन कलर के ।